वो फ्लावर यहाँ पर मौजूद हैं जो पिंक और पर्पल और गुलाबी और डिस्को हरा कई सारे यहाँ पर है जो ह डिजाइन बहुत अच्छे अच्छी है।

इस चित्र में हमें बहोत बड़ा झरना नज़र आ रहा है हम देख सकते है कि पानी किस तरह उग रहा है यहाँ पर एक नाव है जो तेजी से आ रही है और पानी उझालते हुए--

अनाज ही हमे एक मात्र है जिसे हम आज खा कर आज जिन्दा है।

यहाँ पर कूदना होता है या तो इधर यहाँ ऊपर और से जा सकते है निचे भी जा सकते है।

मतलब सैनिक नाका यहाँ पर सिर्फ सैनिक रहते हैं और हमारा बॉर्डर है।

चित्र में हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पानी के अंदर ही दो लकड़ी के घर बनाये गए है।

जिसमे मे जो सितारे जैसा अ जो झन झरना लगाया है उसमें पानी आ रहा है आस पास कई सारे पेड़-पौधे फूल उगे हुए है प्यारे-प्यारे से--

इस चित्र मे हमे जल नजर आ रहा है बड़ा ही खूब सूरत सा एक प्यारा सा नदी जो यहाँ पर आसपास कई सारे घास से भरा पड़ा है।

अ यहाँ पर अ कई कोई भी हम खेल खेलना चाहो तो खेल सकते है वो चाहे क्रिकेट हो या बेडमिंटन या कबड्डी खो-खो या कोई भी खेल हो यहाँ पर खेलने लायक मैदा--

छत बनना अभी बाकी हैं ईंटो से सिर्फ लगाया गया हैं अभी इसमें काम बहोत ही ज्यादा बाकी हैं सीमेंट लगाना हैं चूना पेंट सब--

यहाँ पर चंद कुर्सिया लगाई है लाइटिंगस है और हम देख सकते खाली पड़ा है।